और ये रेलवे क्रॉसिंग की सीढ़ियां हैं जो कि एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म को क्रॉस करती है।

ऊपर तीन फेन लगे हुए हैं ओर तीन चार लाइटें इसमें जली हुई है।

में किसी चेयर स्टूल पर बैठे आए हैं।

बाहर कुछ बोरिया है उसकी साइड में जो सिलेंडर रखे हैं साइकिल खड़ी हुई है।

एक अ बोर्ड लगा हुआ है जिसके सामने एक बाइक खड़ी है ब्लैक कलर की।